यह किसी भी प्रकार का ऑफिस है ऑफिस में बहुत सारे बुक का फाइले रखी हुई है थरमस रखा हुआ है बगल में खिड़की है अलमारी है।

यहां पे ठहररने की व्यवस्था है यहां पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है ठहरिए एक आदमी --

और यहां राष्ट्रगान हो रहा है बच्चे सावधान के सावधान खड़े हैं।